और दो-तीन टबुल है दिवाल में कुछ फोटो फ्रेम लगा है गुब्बारा है--

भी है बहुत सारी कुर्सी भी है और--

एक बड़ा-सा बिल्डिंग है और उसके बगल में कार खड़ी है मतलब गाड़ी और गाड़ी के बगल में बहुत सारी--

यहाँ पे माता रानी का और उसके बगल में एक भगवान का फोटो है कुछ लेडिज लोग उनके पूजा कर रहे हैं पैर छू कर--

ये पानी है नदी है नदी के बीचों-बीच एक झरना टाइप बना हुआ है।

यहाँ पे कुछ लेडिज और जेन्टस लोग बैठ कर काम कर रहे हैं और एक मोबाइल से कुछ फोटो खींच रहे हैं।

ये सरक है सरक पे एक बुजुर्ग आदमी लाठी लेकर और प्लास्टिक में कुछ सब्जी लेकर जा रहे हैं।

ये ए-एक आदमी है जो दो जूते पहने है पैर में दो जूते हाथ में पहने है एक जूते को ऊपर उठाए है।

ये नदी है और नदी के मतलब पोखरा टाइप है जिसमें बहुत सारे पानी है सीढ़ी बनी हुई है जहाँ पे--